रखा है और यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे---

और आंटी कुछ मांग रही है दूसरी आंटी से मेयबी वो कार्ड मांग सकती हैं और और एक अ येल्लो कलर की साड़ी --

कन्या इंटर कॉलेज है अमरोहा का| यहाँ पे (पर) बहोत (बोहोत) ही बड़ा पीपल का पेड़ है ये और रेड कलर का जेल जैसा गेट है यहाँ पर और काफी लोग यहाँ पे (पर) जाते रहते होंगे।

गाइस मैं एक मकान देख रही हूँ और उर्दू का कुछ लिखा हुआ है मेबी ये तमिल भी हो सकती है मुझे इसका कुछ आईडिया नही है यहाँ पे दो बाईक है और --

ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे इस टाईम पर और गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं। ऑरेंज कलर की गाड़ी है सिल्वर कलर की गाड़ी है वाईट कलर की गाड़ी है।

पी.वी.आर. सिनेमास का बाहर का ये लुक है। काफी अच्छी बिल्डिंग है। ग्लास की बनी हुए है। काफी अच्छी इसको आर्टिस्ट दिया हुआ है लुक दिया हुआ है। ऊपर से इस में रेड कलर --